ये एक स्टोर है जिसमें बहोत सारे टाइल्स लगाए हैं बहुत सारे डिजाइन --

बहोत सारे चेयर रखी हैं ओवेल में टेबल भी ओवल शेप में है।

ये एक पार्क है जिसका आगे स्टील का बैरिकेड लगा हुआ है।

और दीवार पे दो और स्टैचू भी लगा हुआ है।

ये एक बिल्डिंग है जिसका फर्स्ट फ्लोर में एस_बी_आई का बैंक है।

कोका कोला फ्रूटी आइसक्रीम का फ्रिज है।

उसके घर के ऊपर अ ऑरेंज कलर का प्लास्टिक से कवर किया हुआ है।

इसमें छोटा सा खाली मैदान है जिसमें बहुत सारे घास हैं।

का बाजू में एक रास्ता है जिसपे बहुत सारे लोग चल रही हैं।

ये कुछ फेस्टिवल है जिसमे लड़का लड़की हसबैंड वाइफ है।

और उसका जो ट्रेनर है वह ऑरेंज कलर का टी शर्ट पे है।

रोड जैसा पेंट किया हुआ है उसमें लाइट भी जल रही है।

एक खुला मैदान है उसमें एक कछुआ है।

इसका सर हाथ पैर बाहर है।

मैदान में बहुत सारे घास है और धूप भी है।

ये एक मंदिर है मंदिर में बहुत सारे लोग है।